यह एक दुकान का दृश्य है जहां पे बहुत सारे सामान रखे गए है।

यह एक कॉलेज का दृश्य है और उसके पीछे टांगा हुआ है पोस्टर ।

और इस घर में हरा और वाइट कलर का पेंट किया गया है।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर को लाइट से लगाया गया है लाइट से सजाया गया है।

और यहां पे टाइल्स भी रखा गया है और एक खिड़की जो कि लोहे और कांच की मदद से बनाए गए हैं।

और यहां कांच का दरवाजा लगाया हुआ है रेलिंग बनाया हुआ है यहां पर सीढ़ियां भी हैं।

और यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल भी हैं और ये दो तल्ला मकान भी है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहाँ पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं।

एवं यहाँ पे बहुत सारे झालर लगे हुए हैं लाइट लगे हुए हैं पंखे लगे हुए हैं।

यह एक पुराना घर का दृश्य है।

यहां पे गेंदा के फूल से सजाया गया है यहां पे चुनरी भी है और दो भगवान भी है।

इसका मुंह ब्लर किया गया है यहां का टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

अंदर में ब्ल्यू हर वाइट किया गया है और यहां पे कुछ लिखा हुआ है।

और लोग भी खड़े है जो पीला व्हाइट पहने हुए है व्हाइट पहने हुए है हरा पहने हुए हैं।

और एक लेडिस माइक ब लेकर बैठी हुई है जो की ब्लू और व्हाइट पहनी हुई है।

उसका मुंह ब्लर है यहां पे चर्च का साइन भी है और उसका रंग हरा है और वाइट है।

यहां एस_बी_आई बैंक का दृश्य है जहां पे पोस्टर टंगा हुआ हैं एस_बी_आई बैंक का।

तगड़ी भी है बालू सारी चीज रखे हुए है।

यह एक चर्च का दृश्य है जिसका रंग पीला और ऑरेंज कलर का है।

यह एक रूम का दृश्य है इसपे गद्दे बिछे हुए हैं कंबल दिख रहे हैं उसके उपर एक टोपी भी दिख रहा है।

पीछे में दरवाजा भी है बैग भी है बहुत सारे है और एक ऊपर चद्दर बिछाया हुआ है।

यहां पे झाड़ियां झाड़ू भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे बंदर भी हैं जानवर भी हैं।

और लाल रंग से लिखा गया है जिसमें लिखा है सत्यम मार्बल एंड टाइल्स ।

यहां पे बहुत ही छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं घास भी दिख रहा है।

चारो और पेड़ पौधे हैं तार भी दिख रहे हैं।

और वह फूलों से सजाया गया है और यहां पे भूरा कलर का रंग किया गया है।

पोस्टर भी टंगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ पिज़्ज़ा इटालियन ।